यह एक माकन जैसा दिखाई दे रहा है इसमें टिन शेड लगा हुआ है यह एक बुलेरो खड़ी हुई है एक --

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है के ऊपर लाल कलर के बोर्ड में लिखा हुआ है सोनाक्षी रेस्टोरेंट वेज और नॉन-वेज ।

एक बगल में आल्टो खड़ी हुई है उसमे उसके बाद एक और गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी ढकी हुई है एक गाड़ी उधर से आ रही है बोलेरो है बहोत सी गाड़ी खड़ी हुई --

इसमें एक पर्दा लगा हुआ है ब्लू कलर का है इसमें फूल लगा हुआ है दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर फूल फाल लगे हुए --

इस इमेज मे हमको स्प्राइट थम्स अप और फ्रूटी बहोत सी चीज दिखाई दे रही है इसमे को बिस्कुट भी रखे हुये है बर्थडे वाली भी रखी हुई है कोकोनिन दिखाई दे रहे है रेस्टूरेन्ट का।